पिक्चर बानी हुई है जो कि एक बोट पे बानी है बोट का रंग सफ़ेद है नीचे हरी-हरी घास दिखाई दे रही है पीछे पानी का बहुत बड़ा --

जैसा की मै देख पा रही हूँ मुझे यहाँ पर एक चर्च का इलाका दिखाई दे रहा है जहाँ पर बहोत सारे पादरी खड़े हुए है।

एक दीवार दिखाई दे रही है जो छत की दीवार है जो सफेद आसमानी और भूरे रंग की है यहां पर कुछ यात्रीगण खड़े है जिन्होंने --

पीछे कुछ लोग खड़े हुए हैं जो एक टेंटनुमा --

कुर्सियां बनी हुई हैं जिनका रंग सफ़ेद है।

यहाँ पर जमीन का रंग हरा-हरा है बांसो की संख्या बहौत ज़्यादा है ऊपर छत्त का रंग भूरा है और उसपर --

जिला टिहरी गडवाल उत्तराखंड लिखा हुआ है यहाँ पर जमीन पर कुछ बड़े-बड़े पत्थर रखे हैं जो काले रंग के हैं जमीन का रंग काला और हरा है।

सिलेटी और हरे रंग।

सफ़ेद यहाँ पर एक आदमी खड़ा है जिसने सफ़ेद रंग की कमीज़ और बैगनी रंग की पेंट पहनी है।